ए-यख मा जी एक सड़क छा सड़क किनारा कई सारा लोग खड़ा छन होयों कुछ लोग बाइक पर छन कुछ लोग कार पर छन सड़क किनारा कई सारा लाइट भी लगीं छन।

यख मा जी एक मैदान च मैदान मा जी कई सारा लोग यख आयाँ छन एक आदमी यख मा जी बाइक पर बैठ्युं भी छ।

बिच मा एक बाटू भी च बाटा का उंडे फुंडे हरयूं भरयूं घास भी च साइड मा एक लाइट भी छ लगीं।

यपर एक गेट पर एक लड़का अर एक लड़की ओण भी चन लग्यां येका गेट का उंडे-फंडे दुई लेट भी चन लगीं यख लोग अपढी मन्नत मागंण भी ओंदा चन।

साइड मा जी दुई कटोरा भी छन रख्यां एक कटोरा पर दही चा एक कटोरा पर चिकन की तरी चा।

सामणे मा जी एक सफ़ेद कलर को मकान चा मकान का भैर बटिन एक कालो कलर को गेट छा एखा चारो ओर हर्या-भर्या डाला भी छन।